और यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी बाइक खड़ा है जो की दिखने में बहुत मस्त है और ये इस घर में बहुत फैसिलिटी है ।

यह एक बहुत सुंदर सा फिगर दिखाया गया है जो कि दिखने में काफी सुंदर और मस्त है और यह फिगर --